इस फोटो में सामने एक बहुत बड़ी लाईन दिखाई दे रही है।

ब बोल्ट लगे हुए है।

सामने एक झोपड़ी पड़ी है जो की तिरपाल से बनी हुई है।

पीछे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कुछ बाल्टी रखी पड़ी हैं।

इसमें रखा हुआ सफेद कलर का ड्रोन दिख रहा है।

नीचे कुछ बकेट रखी हुई है और ऊपर कुछ लाइटें दिखाई दे रही है।

फोटो में एक स्कूल दिखाया गया है।

जो कि बहुत बड़ा स्कूल है।

सामने ही कुछ फूल लगे हुए हैं और नीचे एक मेज रखी है जिस पर तीन गमले भी रखे हुए हैं।

नीचे एक झाड़ू मारता हुआ आदमी दिख रहा है।

पॉट्स में कुछ फूल दिख रहे हैं।

कुछ ग्राउंड में कुर्सी पड़ी हुई है जिन पर कुछ आदमी बैठे हुए हैं।

सामने एक लड़का दिख रहा है।

इस फोटो में सामने एक गली जाती हुई दिखाई दे रही है।

जीसमे कुछ आदमी मछली काट रहे हैं।

नीचे कुछ लाइटें जली दिख रही हैं।

सामने कुछ कमरे दिखाई दे रहे हैं और कमरों की खिड़कियां दिखाई दे रही है।

सामने एक कार खड़ी हुई है जिसके पास एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने ही कुछ पिलर भी पड़े हुए हैं जो की सीमेंट के हैं।

इस फोटो में सामने एक ब्यूटी पार्लर दिख रहा है।

नीचे कुछ लड़कियों का चित्र बना हुआ है।

इसमें उनके बाल दिखाए गए हैं और अलग अलग तरीके का मेकअप दिखाया गया है।

इसमें कुछ पेस्ट रखे हुए हैं।

पीछे हैप्पी बर्थडे और एक दिल का एक स्टैचू है जो कि जल रहा है।

जिसमें कुछ लाइन कैशियर के काउंटर पर लगी हुई है।

और कुछ प्लास और उसके सामान भी पड़े हुए हैं।

नमकीन के पैकेट जो की टंगे हुए हैं बेबी दिख रहे हैं।

के आस पास दो कार खड़ी हुई है और सामने कुछ कार का सामान पड़ा हुआ है।

और कुछ इक्विपमेंट पड़े हुए हैं।

इस पर कुछ बैलून लगे हुए हैं और ऊपर कुछ तमिल भाषा में लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक सैलून दिख रहा है।

लड़के के पीछे एक तौलिया रखी हुई है जो की सफेद रंग की है।

सामने एक कॉस्मेटिक की दुकान दिख रही है।

ऊपर एक बैनर दिख रहा है जो की फटा हुआ है।

पास में पाइप दिखाई दे रहा है।

कुछ पंछी दिख रहे हैं जो कि उड़ रहे हैं।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

जो की प्रिंट करने की मशीन है सामने एक बॉक्स रखा हुआ है।

सामने एक छोटा सा मंदिर और दिखाई दे रहा है।

कटोरी में अलग अलग तरीके की सब्जी रखी हुई है।

उसके नीचे कुछ गाड़ियां पेट्रोल डलवा रही हैं।

जिनमें कुछ कुरकुरे किंडर जॉय वगैरा रखे हुए हैं।